यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
पहले अपनी प्रस्तुति sample impress पर double क्लिक करके इसे open करते हैं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
इसे normal view कहा जाता है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
या view और normal पर क्लिक करके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
आपके पसंदीदा किसी एक पर क्लिक करें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
अगला हम आउटलाइन व्यू देखेंगे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
या आउटलाइन टैब पर क्लिक करके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
ये यहाँ slide headings हैं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
या across लाइन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
या slide sorter टैब पर क्लिक करके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
अब mouse button को छोड़ दें
slides में अदलाबदली हो जाती है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
notes भाग में कुछ text type करें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
tab normal टैब पर click करते हैं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
view और tasks pane पर click करें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
यह slide के लेआउट को बदलता है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
एक नई प्रस्तुति बनाएँ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
spoken tutorial project team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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद